यहां पर एक लड़का है जो की अ अपनी बॉडी दिखा रहा है।

मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है।

कोई पेड़ दिखाई दे रहा है।

व नीला आसमान दिखाई दे रहा है कुछ क्या काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

ऊपर खिला आसमान और टेलीपोच दिखाई दे रहे हैं और काफी सारे केबल यहाँ लटके हुए दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर --

इधर नीचे हरा घास का मैंदान मुझे दिखाई दे रहा है।

छोटे-छोटे दुखन यहाँ लगी हुई है।

और यह एक टेबल पर रखा हुआ है।

बोहोत अच्छा डे डेकरैशन किया गया --

दिखाई दे रहे हैं। ग्रोसरी यहां पे दिखाई दे रही है। नीचे टाईल्स लगे हुए हैं।